सेंट इग्न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और --

गद्दे भी बहुत ही मुलायम नजर आ रहे हैं और तकिया वगैरह है लाइट व्यवस्था है और एक बहुत ही सुंदर कुर्सी भी है।

तो कुछ लोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए यहाँ पे आए है और सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है कुछ महिलाए भी है।

यहाँ ए एक दुकान है और यहाँ पर गिफ्ट वगैरह घड़ी गिफ्ट गैलरी जैसा कुछ लग रहा है क्योंकि --

गिफ्ट खरीद खरीद के सामने वाले को देते हैं।

और गुलाब फूल का बीच में इस्तेमाल किया गया है माला में जो बहुत ही खूबसूरत है।

चिड़िया दिखाई दे रहै है और चिड़िया का नाम है शायद तोता हो सकता है अइ देखने से बहुत उमर के तोते लग रहै है लंबे-लंबे इनके --